ये सामने बहुत से व्यक्ति और लडीजे जेन्स खड़े दिखाई दे रहे हैं और वहाँ कुछ ए-भीड़ भाड़ भी लगी है सामने एक दुकान भी दिख रही है।

और आइड साइड में कुछ हरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं व आसमान दिख रहा है ये दिन का समय है धूप निकली हुई है और वहाँ कुछ चौड़ी सी दिखाई दे रही है।

और वहाँ कुछ फूल के पौधे भी लगे हुए भी दिख रहे हैं और ये दिन का समय है आसमान दिख --

निकली हुई है और कुछ ईमारत चार-पांच मंजिल की हैं और कुछ एक दो मंजिल की हैं।

और वहां पीले-पीले झूले दिख रहे हैं और कुछ हरे हरे वृक्ष भी लगे दिखाई दे रहे हैं आसमान दिख रहा है दिन का समय है।